सामने एक बड़ा सा स्कूटी सफेद रंग का खड़ा हुआ है।

पकाको से रौशनी बाहर आ रही है।

यह एक कार का दृश्य है।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

में नीले रंग का ऊपर पट्टी बना हुआ है।

जिसमें बहुत सारे खंबे बने हुए हैं।

जिसमें काले भूले रंग के बड़े बड़े चट्टान है।

यहां पर एक सड़क का दृश्य है।

ऑरेंज तथा मेहरून रंग का--

तथा दूर में बहुत सारे घर भी बने हुए है।

लोग बहुत सारे यहां पर बैठे हुए हैं।

यहां बहुत सारे कतार पे--

गाय के मुंह में एक सफेद रंग की रस्सी बंधी हुई है।

यहां पर एक दुकान का दृश्य

तथा एक सफेद रंग का गाड़ी--

तथा क्रमबद्ध कतार से काले रंग की कुर्सियां रखी हुई हैं।

जिसमें से पानी सफेद रंग का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं।

तथा कुछ लड़कियां नीले रंग का साड़ी पहनी हुई हैं।

यह किसी क्लासरूम का दृश्य है।

तथा ब्लैक ब्लैक बोर्ड भी है।